और उसके सामने कुछ वो वो व्हाइट कलर का प्लास्टिक में रखा हुआ है।

जिसमें काफी सारे अह अह रखे हुए हैं।

और उसके सामने एक सी_सी_टी_वी फ़ोटेज लगा हुआ है।

और उसके सामने एक बड़ा सा लाइट लगा हुआ है।

सामने से कुछ व्यक्ति फोटो घीच रहे हैं और कुछ व्यक्ति पीछे से फोटो ले रहे हैं।

और उसके सामने एक अम बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ है।

और उसके नीचे मां गायत्री अह ज्वेलर्स बर्तन की दुकान लिखा हुआ है।

काफी सारे किताब भी रखे हुए हैं जिसमें टेबल का एक पीला कलर का प्रचार--